उनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से चुना गया है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में और दीवार पर--

एक छत भी बना रखी है और स्टेशन के आस पास हमे--

ये एक चित्र है क दुकान का जहां पर हमको कांच के बर्तन दिख रहे है और टिफिन वगैरह वाटर कूलर दिख रहे है।

और पानी भरने के लिए वाटर कूलर और ले जाने के लिए खाना ले जाने के लिए पैक करने के लिए--

काफी सारी इमारते नज़र आ रही है पूरा शहर का एसे--

दिए गए चत्र में हम एक शॉपिंग मॉल की तस्वीर देख रहे है जो कि बहुत--

और उनके साथ और बॉल भी मिल रही है और और भी बहुत सारा सामान रैक पर सजा--

यहा हम इस चित्र में एक सड़क देख रहे है जो कि काफी चौड़ी सड़क है।

और दुकान के बाहर हमको वो वाहन खड़े हुए नजर आ रहे है जिनमे--

इस चित्र में हम किसी सरकारी दफ्तर के आगे लगी भीड़ देख रहे है जिनमें एक लाइन से महिलाएं खड़ी है।

और यहां पर ये महिलाएं किसी चीज किसी मसले के हेतु यहा पर इकट्ठी हुई है।

और अपनी सुनाई के लिए लाइन में लगी है बाकी बरी बरी से इनका--

दिए गए चित्र में हम किसी सड़क का चौराहा का चित्र देख रहे है जहां पर बीचोंबीच चौक पे एक प्रतिमा बनी हुई है।

शौचालय है और काफी साफ सुथरा भी है यहां पर पानी का भी पूरा इंतजाम है और लाइट भी लगी हुई है।

शुभ कार्य के लिए सजावट की जा रही है और कुर्सियां लगी है पांच-पांच कुर्सियों का सेट बनाया गया है जिनके--

आता जाता हमें अभी नहीं दिख रहा है और एक स्कूटी के अलावा यहा--

दिए गए चित्र में हम एक कक्षा की तस्वीर देख रहे है जहां पर एक अध्यापक अपने छात्रों को कुछ--

सिखाते हुए नजर आ रहे है कुछ पढ़ाते हुए नजर आ रहे है और यहां पर जो--

छात्र है वो नीचे जमीन पर यानी नीचे जमीन पर बैठकर कुछ सीखने की कोशिश कर रहे है।

यहां एक चित्र में हम एक गार्डन की तस्वीर देख रहे है जिसमें अंदर उनको फाउंटेन का चित्र नजर आ रहा है।

सामान बनाया जा सके और ये बहुत सारी संख्या में यहां पर दिख रहे है और यहां पर देख सके--

यहा हमको बहुत सारे पहाड़ों की तस्वीर देख रहे है और एक विशाल खाई भी देख रहे है।

दिए गए चित्र में हमें यहां पर कुछ महिलाओं की तस्वीर देख रहे है जो कि एक स्टेज पर खड़ी हुई सामने की तरफ देख रही है।

और हमारी आंखों के सामने हमें एक लैपटॉप नजर आ रहा है जो कि बहुत ही शानदार--

एप्पल कंपनी का है और यहाँ पर बोहोत अच्छे स्टाइलिश तरीके से--